नीला कलर का व्हाइट कलर का रूम है।

पत्थर है बहुत सारा रखा हुआ हैं सुखा पत्ता हुआ गिरा है बहुत सारा पेड़-पौधा है उसपे फूल लगा हुआ है व्हाइट कलर का।

चारो बगल से घिरा हुआ है। पेड़ पर फूल लगा हुआ है।